खाट लगे हुए हैं और ऊपर में जो एक वृक्ष सा नजर आ रहा है पीछे नदी नजर आ रहा है।

जो तस्वीर है तस्वीर को एक किसी फ्रेम का दिखाया जा रहा है फ्रेम जो वाइट कलर फ्रेम है और उसमें नीचे में टाइल्स भी नजर आ रहे हैं।

हमेशा साफ नहीं रहता है कुछ कीड़े मकोड़े भी ज्याद हो सक--

साफ नहीं यह थोड़ा गंदा सा है। पुराना न्यूज पेपर है और यह मशीन क्या चीज़ की मशीन है मालूम नहीं लेकिन मशीन तीन चार मशीन रखे हुए है यह रूम पे।

बाइटया कैनल्स पेट शॉप है पेट शॉप का दुकान है या पेट्स पेट्स भी रखे हुए हैं पेट्स को--

ये जो तस्वीर है तस्वीर में एक बिल्डिंग का लग रहा है कॉरिडोर --

लाइटिंग भी अच्छा है चेयर रखे है चेयर के सामने में जो है मिरर भी रखे हुए हैं लेकिन कोई भी बंदा--

इमेज भी दिख रहा है पीछे में जो घर बना हुआ पिंक कलर का ये लाइटिंग भी किया हुआ है।

पे लिंक के उनके तरफ चलते हुए जा आने का नजर आ नजर नजर आ रहा बाहर में जो है।

बस पेड़ भी नजर आ रहा हरा भरा पेड़ नजर आ रहा है और यहा पे जो है सूरज की किरने भी नजर आ--

मैं आपको बताना चाहूंगा दिन का समय है नीला आसमान नजर आ रहा है पिछे रेत रेत भी नजर--

थोड़ा सा टीवी का दुकान का तस्वीर का नज नजर आ रहा है जहां पर सब स्क्रीन ऑन किए हुए हैं।

ये जो तस्वीर है लग रहा है कुछ स्कूल का फंक्शन का तस्वीर है जहां बच्चे दौड़ रहे हैं एक के पीछे एक--

ये जो तस्वीरे कुछ फंक्शन के नजर आ रहे हैं लग रहा बहुत ही बढ़िया तरीका से इसको सजाया गया है कपड़ों से फूलों से और--

आते सर जो पुतला प्लास्टिक मोल्ड वाला पुतला होता है उसमें लगाया गया है।

पर्दे भी लगे हुए हैं ए_सी भी लगा हुआ है पंखा भी लगा हुआ है और जो--

अह कटे हुए साफ कर किए हुए नजर आ रहे हैं जिनकी गंदगी निकली जा चुकी है कुछ अभी भी फ्रेश नजर आ रहे हैं जो खाने के लिए बनाए जा रहे हैं शायद।